सामने आप को झूला दिख रहा है जिसपे एक बच्चा झूल रहा है स्लाइड कर रहा है पीछे भी एक बच्चा स्लाइड कर रहा है दोनों तरफ से झूले हैं।

ओर ट्रेन की पटरी लगी हुई है जोकि देखने मे काफी ही अच्छा लग रहा है ओर ये होना ये --

जोकि देखने में काफी अच्छा है। नीचे कंकरित दिया हुआ है सिमेंटेड कलर का और सामने घास है जो हरे कलर --

किल्वर कलर के गुंबज लगे हुए हैं छे और यहां पे पीले और हरे कलर में ये आटो है नीचे उसकी लाइट है पीछे एक बाइक है और ये शड़क है।

बगल में आपको मोट्रो नी मोट्रोनिकल हो लगा हुआ है लिखा हुआ है। सामने आपको फेविक्विक टंगे हुए दिख रहे हैं और यहां पे एक इंजिन ऑयल का --